बगल मे जिम का सामान है और पीछे भी जिम का ही सामान है जिम मे बहुत सारीं लाइट्स लगी है जिसकी रोशनी उजला है इस लड़के ने हाफ पेन्ट पहना है और टी-शर्ट पहना है टी-शर्ट का रंग ग्रे है और पेन्ट का रंग ब्लू है।

यहाँ खुला एरिया है जो ऊपर मे खुला आसमान है जो उजले रंग का नजर आ रहा है यहां रोड है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही है और अगल-बगल बहुत सारे घर है।